दो बच्चे है जो एक दुसरे के गले में हाथ डाल के जा रहे हैं बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं स्कुल का प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा है कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं।

सामने की तरफ मुझे हरी-हरी कलर की घासे नज़र आ रही हैं हरे-हरे कलर के कुछ पोधे नज़र आ रहे हैं सामने के तरफ मुझे दो पिलर नज़र आ रही है जो की सफ़ेद कलर की नज़र आ रही है दूर-दूर मुझे कुछ छोटे-छोटे से घर नज़र आ रहे हैं।

तरह मुझे गोल-गोल सा भी कुछ नजर आ रहा है दूर की तरफ मुझे एक छोटा सा पेड़ भी नजर आ रहा है इससे के साथ मुझे सामने की तरफ भी कुछ नजर आ रहा है।

और इसी के साथ मुझे समुद्र के दूर की तरफ कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ-कुछ भी घर भी नजर आ रहे है दूर-दूर मुझे ऊपर का मौसम भी काफी दिन साफ नजर आ रहा है।